अंडा सा दिखाई दे रहा है और मोर जहा पर खड़ी है वह पर छोटे-छोटे कई बड़े छोटे-छोटे प-पत्थर भी दिखाई दे रहे है। और --

इस स्टेच्यु ने प्यारी सी पीले कलर की फ्रॉक पहन रखी है जिस पर प्रिंट हो रखा है कुछ फ्लॉवर बने हुए है साइड में फोन पे दिखाई दे रहा है और यहा पर फोन पे का एक वो--

ऐसे खड़ी हुई देख रही है और यहा पर कई अधिक मात्रा मे बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे है और आसमान का कलर निला सा भी दिखाई दे रहा है।

दुर्वा लगी हुई है और बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए है और पार्क मे छोटी-छोटी घास नजर आ रही है।

कई प्रकार की फूलों की माला लगी हुई है जो काफी बड़ी-बड़ी है एक माला सफ़ेद कलर के बेग सफ़ेद कलर की माला रखी हुई है।

पुरुष ने शर्ट पेहन रखी हुई है और दोनो व्यक्ति कुछ काम करते हुए नजर आ रहे --